सुख समृद्धि का प्रतीक लाता है सामने हाथी के ऊपर महावत खड़ा हुआ है और ये साउथ का जैसे लग रहा है यहां नदी में हाथी नहाने के लिए आया हुआ है।

और ये जो ओपन जीम है किसी सड़क के किनारे लगी हुई है ये यहाँ पे जिम कर रहे है जो खूबसूरत लग रहा है पेड़-पौधे भी बढ़िया है।

लेकिन यहां पे गार्डन पे नीचे जो है यहां पे घास नहीं लगा हुआ है।

यह एक नदी की फोटो है बहोत सुंदर नदी लग रही है सामने नाव भी रखा हुआ है।

ये ट्रैक में शायद पैसेंजर गाड़ियां नहीं आती--

चार पांच गाड़ियां ही खड़ी हुई हैं जो बहुत प्यारी लग रही हैं।

सेटिंग जो अरेंजमेंट बहोत बढ़िया किए हुए है खाने का सामान यहाँ पे काफी बढ़िया लगेगा आसपास का जो वेदर और लुक है झूलर झ झामर वगैरा लगे हुए है।

कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं जो यहां पे भजन सुनने बाबा जी के पास आए हुए हैं साहेब गुरुद्वारे दादाजी के पास में।

और सीढ़ी से इसका आवाज यही चल रहा है।

बैठे हुए हैं जो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने से जाने से।

सामने हमारे एक ढाबे का फोटो है जिसका इंटीरियर काफी बढ़िया लग रहा है।

और बाकी का जो स्पेस है वो खाली है और पीले रंग में इसकी--

किचन जो है इसका अंदर में है। खाना बड़ा टेस्टी यहां का बनता है।

जो पार्किंग के लिए है और काफी खूबसूरत लग रहा है।

सामने जो है एए बाहर में एक कुर्सी तकी हुई है।

रख रखाव है वह बहुत ही सुंदर लग रही है।

एक घर नुमा ये जगह है पार्किंग स्पेस जो है--

हमे यह जो सामने चित्र नजर आया है वो एक योगा करते हुए महिलाओं का है।

जो अपना जो स्वास्थ्य का जो ध्यान हैं वो रखती हैं।

क्वालिटी भी बढ़िया हैं क्वांटिटी भी बढ़िया हैं लाईटिंग की व्यवस्था--

तीन दिन का ये कार्यक्रम चलता है यहां पे लोग पूजा के लिए आए हुए हैं बहुत सारे मंडप बनाए हुए हैं।

की जाती है और लेकिन यहां पे कुछ कारण से--

यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे लोग क्रिकेट --

बड़ा सा सीसी होने के कारण यहां पे जो इस्टूमेंट है।

कपड़े का ये शोरूम है जहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के लिए ये अरेंजमेंट की गई है और ये सारे कपड़े फीमेल के लग रहे --

यह जो पिक है ये काफी खूबसूरत सा लग रहा है क्योंकि यहां पे चाइल्डहुड फ्रेंड है खड़े हुए है।